सजाया हुआ है आदमी उस जगह पे खड़े है उ बैठे --

अथि बगीचे है ।

दुकान ही है दुकाने है करकट का बना हुआ है।

कलर के है उन उन जिसमें --

ये लड़के और लड़किये भी खड़े हैं।

वाइट वाइट कलर के कपडे पहने हुए है ये लग रहा की क --

ये बुध भगवान का फोटो है ये --

उसमें देखने में वह देखने में बहुत ही बिजलियां भी गए हुए हैं।

स्कूल में लगता है की डांस सिखाये जाते है।

यहाँ पे मेले लगे हुए है ।

ये घर अभी लग रहा है एक से दु तल्ला तक है।

इस गेट के आस-पास बगीचे भी लगे हुए है ।

यह एक ए.टी.एम है ए.टी.एम. मे --

भी चल रहा है इसके आस-पास बहुत सारे बगीचे भी है।

स्वर्गीय पारस सिंह का ये घर लग रहा है।

फुल और पेपर भी रखा हुआ है इसके सा --

सड़क भी है सड़क के आस-पास फूल लग रहा है कि --

है पत इस पहाड़ के आस --

यहाँ एक बुक फेयर है इसमें --

बाहर से टाइल्स भी या कुछ भी लगा हुआ है देख --